पीछे एक रावण का पुतला है आगे दो पुतले हैं पीछे उसके दस मुंह हैं और रिबन से सजा हुआ है और साइड से कुछ लोग खड़े हुए है | खुला ऊपर --

क्योंकि एक अ औरत पीले कलर की टी-शर्ट पहने हुए है | सामने से कुछ लाइटिंग आ रही है | नीचे कुछ --

वे चारों तरफ से रेड और क्रीम कलर के पर्दे लगे हुए हैं और बड़े-बड़े लाइटिंग के झूमर लटक रहे हैं | सामने नीचे रेड कलर की कार्पेट बिछी हुई है | पीछे से कुछ लोग खड़े हुए हैं ।

सामने एक मैदान है जिस पे चारों तरफ से अ पंडाल लगी हुई है | चेक और ऑरेंज कलर की पंडाल लगी हुयी है | लोहे के पाइप लगे हुये हैं | नीचे मैदान है |

मिट्टी डली हुई है हल्का दीवार सी बनी हुई है साइट के कुछ चारों तरफ से काई सी बनी हुई --

बगल से दो पेड़ खड़े हुये हैं | बगल से एक और ट्रैक रखा हुआ है | कुछ कचरा डला हुआ हैं नीचे मिट्टी डली हुई है पानी डाला हुआ है ऊपर खुला आसमान है।

कुछ व्हाइट है कुछ ब्लू है और पीछे गोल्डन कलर का वर्क हो रखा है पीछे एक स्टेज वाइट कलर की पीछे दीवार है चारों तरफ से नीचे माता है जहां हाथ मे एक फूल लिए हुए है।

चारों तरफ से फूल छोटे-छोटे पेड़ लगे हुए हैं | नीचे जमीन है जिसमें हल्का सा कचरा डला हुआ है | चारों तरफ से काई लगी हुयी है।